इस तस्वीर मे तीन सोफे दिख रहे हैं।

इस छवि में एक सफेद रंग की बिल्डिंग दिख रही है।

इस फोटो मे फ्रिज के ऊपर कोकाकोला लिखा हुआ दिख रहा है।

इस फोटो में शॉप के ऊपर बैनर दिख रहा है जिसमें श्री श्याम फ्रूट्स एंड जूस लिखा हुआ है।

इस छवि में दो टावर दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में पीछे एक बिल्डिंग दिख रही है।

इस छवि में बहोत प्रकारों के पत्ते दिख रहे हैं।

इस छवि में छोटे से लेकर बड़े पत्ते भी दिख रहे हैं।

इस छवि में दो तीन लोग दिख रहे हैं।

इस छवि में डिब्बे के अंदर चॉकलेट्स रखे हुए दिख रहे हैं।

छवि मे ब्रेड्स रखे हुए दिख रहे है।

इस छवि में पानी बहते हुए दिख रही है।

इस छवि में लाइट और घड़ी भी रहीं है।

इस छवि में एक मछली का दुकान दिख रहा है।

तस्वीर में जगह को सुंदर से सजाया हुआ रखा है।

इस छवि में एक टंकी भी दिख रहा है।

इस तस्वीर में अंग्रेजी अक्षरों में कॉफी लिखा हुआ दिख रहा है।

इस छवि मे एक पेट्रोल पंप देख पा रहे है हम।

इस छवि में हिंदी और इंग्लिश में इंडियन ऑयल लिखा हुआ दिख रहा है।

इस तस्वीर में दिन का समय दिख रहा है।

इस तस्वीर में पौधे सिस्टमैटिक तरह से रखा गया है।

छवि मे एक पेड़ कटा हुआ दिख रहा है।

इस तस्वीर पर हिंदी भाषा के न्यूज़पेपर भी दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में लड़कियां सब एक के पीछे एक लाइन बना के खरे हुए हैं।

इस तस्वीर में बहुत सारे कागज पड़े हुए दिख रही हैं।

इस तस्वीर में एक आदमी एक्टिवा चला जा रहा है।

इस छवि में पानी बहती हुई दिख रही है।

इस तस्वीर में कैफे के ऊपर एक ब्लैक बोर्ड में द सिटी कैफे लिखा हुआ है।

इस तस्वीर में एक बिजली का खंभा दिख रहा है।

इस छवि में हमें बहोत प्रकार के रंग के पेपर्स भी दिख रहे हैं।

दिखाए गए छवि में हर एक प्रकार के डिजाइंस के नीचे कुछ लिखा हुआ भी है।

इस तस्वीर में एक रिसेप्शन दिख रही है।

सभी बच्चों ने एक यूनिफार्म पहना हुआ है।

इस तस्वीर में सफेद रंग का एक सोफा दिख रहा है।